पिक्चर में ये छोटे-छोटे से जानवर जो दिख रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं।

पिक्चर दिख रहा है। इसमें एक रेस्टोरेंट दिख रहा है जहाँ पे --

और दूर दूर तक कुछ नेट वगैरह टाइप का भी कुछ दिख रहा है जो कि देखने में भी बहोत ही अच्छा लग रहा है।

जो भी घर में हमारे यूजफुल होता है।

कोई जगह मतलब कोई टूटा टूटा हुआ जगह है कोई पैलेस है जो कि बहुत पहले बना हुआ था जो कि समय के साथ धीरे-धीरे --

नाव चालक बैठे हैं दो ठो।

ये अक्सर नदी वगैरह में ये नाव दिखता है जहां पे कुछ मछुआरे आते हैं।

यह मतलब थोड़े से बड़े शहरो में जहाँ मतलब नदी व् नदी मतलब क्या बोलो समुन्दर वगैरह रहता उसमें लोग घुमने के लिए यह चीज रेंट पे लेते हैं। अ जैसे गोवा वगैरह हुआ।

पिक्चर में दिख रहा है कि एक जो कुत्ता है उसका कुछ ईलाज हो रहा है। .

और आ यहां पर लोग चीफ गेस्ट वगैरह आने वाले हैं कुछ और कुर्सी कुर्सी उसी के लिए लगा हुआ है लग रहा है।

और बहुत ही जरूरी होता है ये सब कर --